यहां भवन बनाने के काम चल रहा है। बहुत सारी व्यक्ति जुड़ कर भवन बना रहे हैं। कोई भवन बनाने के लिए सिमेन्ट डाल रहा है तो कोई रोड बिछा रहा है।

बहोत सारे व्यक्ति वहां मच्छी खरीदने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। कोई मच्छी देख रहा है कोई औरतों को देख रहा है।

कुछ बनाकर दिखाने में सभी बालके बहुत ही परीक्षित रूप से अच्छी तरह से अपना ध्यान लगा रहे हैऔर उन्हे देख कर उनकी टीचर काफी खुश हो रही है।